ये एक स्टील की चेयर है इधर बच्चे पढ रहे हैं एक बोतल लगी है पिंक कलर का पेंट है अंदर दो व्हाइट रंग का बलब जल रहा है बहोत उजाला आ--

ये गाड़ी वॉश का जगह है। एक गाड़ी धुलने को आई है। उसे धुल भी दिया है और यह बहुत बढ़िया गाड़ी है ये अच्छी भी गाड़ी है और यह सब बड़ी अच्छी है।